जहां बहोत सारे लोग जाते हुए दिखाई दे रहे हैं।

इस पिक्चर में मुझे बहुत बड़ा सा--

जहां पर बहोत सारे टेबल और कुर्सी लगाए गए हैं।

और नीचे की तरफ बहोत सारे बल्ब लगे हुए हैं।

इस पिक्चर में मुझे बहोत बड़ा--

गाड़ियां जाती हुई दिख रही है।